एक छोटा सा बैंक है बगल मे शटर लगाया गया है बिल्डिंग का रंग सफेद है अंदर की और जा रहा है बगल मे बैठने के लिए लगाया गया है बाहर तीन गाड़ी खड़ी है जो काले रंग की है एक झोपड़ी खड़ा हुआ है ।